ट्रैन उसमे से गुजर रही गुजरती हुवी तो नहीं दिखाई दे रही मगर उसमे से ट्रैन गुजरती है और उपर उसका कनेक्शन दिखाई दे रहा है जिससे उसे बिजली मिलती है।

आप लोग जैसे इस तस्वीर में देख पा रहे हैं एक आदमी खड़ा हुवा है और प्रिंटिंग मशीन के सामने खड़ा हुवा है उसीके बगल में एक और प्रिंटिंग मशीन है ये कोई कारखाना नजर आ रहा है।

सजाया गया है ये कोई पीछे बैनर लगाया गया है जिसमें कुछ तस्वीरें हैं लगता है कोई --

होटल का सीन लग रहा है जहाँपर एक औरत खड़ी है वो किसी --

जैसा की आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं यहाँ पर हमे एक पेड़ दिखाई दे रहा है और --

पौधों का रंग अभी भी हरा दिख रहा है। यहाँ इसके पीछे जरूर कोई मैदान --

जैसा आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं की शादी की तस्वीर है यहाँ पर एक लड़की --

ये शादी का माहौल है और ये किसी प्लेन्स वाली जगह पे हो रहा है यहाँ की घास कितनी सुंदर है लेकिन घास को भी इसमें --

काफी सारे बल्ब दिखाई दे रहे हैं जिसे हम ट्यूब लाइट भी कहते हैं निचे काफी सारे पीछे औरतें भी घूम रही हैं।

दंडे की नीचे शायद उसकी चोंच भी फंसी हुई है लोग कितने क्रूर और कितने --

बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं यह सफेद रंग में बिल्डिंग बनी हुई है और उसके बगल में भी कुछ बिल्डिंगे बनी हुई है।

ये टी.सी.जी स्कूल के पास पड़ता है।

इस मंदिर में स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पे --

यह दीवारों पर देख रहे हैं दीवारों पर भी कुछ तस्वीरें बनी हुई है औरत के बगल में खिड़कियाँ हैं और उसके भीतर --

यहाँ पर फिट इंडिया विज़न का बैनर लगा हुआ है।